यहां पर बहुत सारा सामान--

बहुत सुंदर डिजाइन किया गया है।

देख सकते हैं यहां पर बहोत बड़ी--

तो जैसा कि आप--

तो जैसा की आप देख सकते हैं यहां पर--

तो जैसे की हम देख सकते हैं यहां पर--

सकते हैं यहां पर--

देख सकते है ये एक ऑफिस है जहां पर --

ऐ यहां पर अभी सब--

सकते हैं यहां पर बहुत बड़े--

तो जैसा की आप--